perl में exception and error handling पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम निम्न करना सीखेंगे:
इस tutorial के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ:
आप अपनी पसंद का कोई भी टेक्स्ट एडिटर प्रयोग कर सकते हैं
इस ट्यूटोरियल के अनुसरण के लिए आपको पर्ल प्रोग्रामिंग का कार्यकारी ज्ञान होना चाहिए
यदि नहीं तो स्पोकन ट्यूटोरियल वेबसाइट पर सम्बंधित पर्ल स्पोकन ट्यूटोरियल्स देखें
जब एक एरर आती है तो एक्सेक्पशन हैंडलिंग प्रोग्राम के निष्पादन को सामान्य निष्पादन पथ से विचलित करता है
एरर हैंडलिंग एप्लीकेशन को समाप्त किये बिना प्रोग्राम को पुनः प्राप्त करने के लिए मदद करता है
हम कुछ तरीकों से एक एरर को पहचान और ट्रैप यानि पकड़ सकते हैं हम perl में कुछ सामान्यतः प्रयोग होने वाले मेथड्स देखेंगे
warn फंक्शन आगे की क्रिया लिए बिना केवल एक वार्निंग मैसेज देता है
die फंक्शन तुरंत ही निष्पादन को समाप्त करता है और एरर मैसेज दिखाता है
अब एक सैंपल प्रोग्राम जो हमने पहले ही सेव किया है को प्रयोग करके die फंक्शन को समझते हैं
टर्मिनल पर जाएँ और टाइप करें: gedit die dot pl ampersand और एंटर दबाएं
यह diepl फाइल में कोड है अब कोड समझते हैं
यहाँ हमने divide नामक एक फंक्शन परिभाषित किया है जो दो इनपुट पैरामीटर्स लेता है
एट द रेट अंडरस्कोर@_ एक स्पेशल वेरिएबल है जो फंक्शन को पैरामीटर सूची पास करने में उपयोग होता है
अगर डिनोमिनेटर ज़ीरो है तो die फंक्शन स्क्रिप्ट को छोड़ देगा
यह यूज़र के पढ़ने के लिए एरर मैसेज भी दिखायेगा अन्यथा यह आउटपुट प्रिंट करेगा
ये फंक्शन कॉल स्टेटमेंट्स हैं
पहले दो बार फंक्शन निष्पादित होता है क्योंकि दूसरा पैरामीटर ज़ीरो नहीं है
तीसरी बार डिनोमिनेटर वैल्यू ज़ीरो है अतः die फंक्शन निष्पादित होता है
आखिरी divide फंक्शन निष्पादित नहीं किया जायेगा क्योंकि die फंक्शन स्क्रिप्ट छोड़ देता है
प्रोग्राम को सेव करने के लिए ctrl + s दबाएं
अब program को निष्पादित करें
टर्मिनल पर वापस जाएँ और टाइप करें: perl die dot pl और एंटर दबाएं
यहाँ प्रदर्शित की तरह आउटपुट दिखता है cant divide by zero!
यह वो एरर मैसेज है जो die स्टेटमेंट में हमने प्रोग्राम में दिया है
आगे हम देखेंगे कि एरर को हैंडल करने में eval फंक्शन कैसे प्रयोग होता है
eval फंक्शन रनटाइम एरर्स या एक्सेप्शन्स को हैंडल करने के लिए प्रयोग होता है
उदाहरणस्वरूप बिल्टइन एरर्स जैसे out of memory divide by zero या यूज़र डिफाइंड एरर्स
eval फंक्शन के लिए सामान्य सिंटेक्स यहाँ दिखाया जाता है
डॉलर एक्सक्लेमेशन $! स्पेशल वेरिएबल एरर मैसेज रखता है यदि कोई है
अन्यथा डॉलर एक्सक्लेमेशन $! एक खाली स्ट्रिंग रखता है जिसका मतलब है यह false की तरह मूल्यांकित किया जाता है
एक सैंपल प्रोग्राम प्रयोग करके eval फंक्शन को समझते हैं टर्मिनल पर जाएँ
टाइप करें: gedit eval dot pl ampersand और एंटर दबाएं
eval dot pl फाइल में स्क्रीन पर प्रदर्शित की तरह निम्न कोड टाइप करें अब मैं कोड समझाती हूँ
यहाँ हमारे उदाहरण में open file die स्टेटमेंट को कॉल करता है यदि फाइल testdat को खोलने में इसे कोई समस्या होती है
पर्ल आखिरी eval ब्लॉक से वेरिएबल डॉलर एक्सक्लेमेशन $! तक सिस्टम एरर मैसेज देता है
फाइल को सेव करने के लिए ctrl + s दबाएं
टर्मिनल पर वापस जाएँ और टाइप करें: perl eval dot pl और एंटर दबाएं
यहाँ प्रदर्शित की तरह सिस्टम एरर मैसेज दिखता है
अब एक अन्य उदाहरण देखते हैं इस समय हम एक एरर मैसेज देखेंगे जो $@ डॉलर एट द रेट प्रयोग करके eval फंक्शन से रिटर्न होता है
अब eval dot pl फाइल पर वापस जाते हैं
स्क्रीन पर प्रदर्शित की तरह कोड टाइप करते हैं
हम फंक्शन average पर इनपुट पैरामीटर्स $total $count पास कर रहे हैं
यदि count ज़ीरो है तो हमें एक एरर मिलने की सम्भावना है
यहाँ जोकि die स्टेटमेंट से हैंडल किया जाता है
eval से रिटर्न किया गया एरर मैसेज $@ डॉलर एट द रेट प्रयोग करके दिखाया जाता है
यदि नहीं तो यह average वैल्यू को प्रिंट करेगा
फाइल को सेव करने के लिए ctrl +s दबाएं अब मैं प्रोग्राम निष्पादित करती हूँ
टर्मिनल पर वापस जाएँ और टाइप करें: perl evalpl और एंटर दबाएं
आउटपुट यहाँ की तरह दिखता है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
इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा कि कैसे: एरर्स कैच करते गलतियाँ ढूँढते हैं और एक्सेप्शन्स हैंडल करते हैं
नियत कार्य में निम्न करें अपनी लिनक्स मशीन पर 5 एम्प्लॉई कर्मचारियों के नामों के साथ एक फाइल emptxt बनाएं
emptxt की अनुमति को केवल read में बदलें
नोट: change permission विकल्प के लिए स्पोकन ट्यूटोरियल वेबसाइट पर सम्बंधित लिनक्स स्पोकन ट्यूटोरियल्स को देखें
write मोड में emptxt फाइल खोलने के लिए एक पर्ल प्रोग्राम लिखें और इस पर कुछ एम्प्लॉई के नामों को जोड़ें
यदि open या write ऑपरेशंस असफल होते हैं तो eval प्रयोग करके उचित एरर मैसेज प्रिंट करें
निम्न link पर उपलब्ध video spoken tutorial project को सारांशित करता है कृपया इसे download करें और देखें
spoken tutorial project team:
अधिक जानकारी के लिए कृपया हमें लिखें
स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट भारत सरकार के एमएचआरडी के nmeict द्वारा निधिबद्ध है